पहाड़ के साइड में पेड़ हरे भरे लाइन से लगे हुए दिखाई दे रहै हैं सामने भी हरा मैदान दिखाई दे रहा है जहां पर हरे भरे पेड़ और कुछ पेड़ खजूर के हैं।

के अंदर हमें एक भवन दिखाई दे रहा है जो काफी ऊँचा लम्बा दिख रहा है जो सफ़ेद पीले रंग से लाल रंग की पट्टी से बना हुआ जिसमें बहुत सारी खिड़की काँच की बनी हुई है इसके नीचे कार्यालय दिखाई दे रहा है कार्यालय का बोर्ड --

झंडा दिखाई दे रहा है बिजली के खम्बे दिखाई दे रहें हैं। कुछ दुकाने खुली हुई दिखाई दे रही है।

पहाड़ में कुछ अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं हरा भरा नहीं दिख रहा है एक पत्थरों जैसा दिख रहा है इसके नीचे कुछ पेड़ उगे हुए दिख रहे हैं कुछ चीज हरे रंग की दिखाई दे रही हैं पहाड़।

चित्र के अंदर हमें एक दुकान दिखाई दे रही है जो नीले रंग के बोर्ड की बनी हुई दिखाई उसके आगे एक और दुकान दिख रही है जो लाल रंग के बोर्ड की बनी है उसके ऊपर चादर जो स्टील लोहे की बनी हुई स्टील से बनी हुई दिखाई दे रही है।

एक के बाद एक पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं कुछ पेड़ छोटे-छोटे साइड में दे रहे है कुछ पानी का पानी पानी पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है सामने लंबा सा पहाड़ जाता हुआ दिखाई दे रहा है जो हरियाली वो हरा हुआ दिखाई दे रहा है सफेद आसमान भी --

चित्र के अंदर हमें प्रकृति का दृश्य दिखाई दे रहा है जहाँ पर पहाड़ एक पहाड़ हरा-भरा जिसपे बहुत सारे पोधे बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहें हैं।

पहाड़ के सामने हरे-हरे पेड़ दिखाई दे रहे जो काफी घने-घने दिख रहे कुछ खजूर के पेड़ भी दिख रहे कुछ लाल रंग की जाते हुए भी दिखाई दे रही है।

इसके अंदर हमें एक दो तीन दुकाने दिखाई दे एक दुकान बंद दिखाई दे रही है जिसपे शटर लगा है जिसपे कुछ लाल रंग से लिखा है कुछ दुकान का काउंटर बाहर दिख रहा है जो कांच का बना कुछ दुकान कपड़े की दिखाई दे रही है।